ये एक लाइब्रेरी है जहाँ पे काफी सारे लोग बैठे हुए है कुछ चेयर पड़े है भूरे कलर की है।

यह पे सामने कुछ पुतलियाँ हैं।

इस पर एक पीला बल्ब जल रहा है हवेली के ऊपर से एक काला तार आ रहा है हवेली के बाहर की फर्श है वह सफ़ेद रंग की चमक रही है।

वह नीले रंग के भी है वह हरे पीले लाल नरगी रंग के जिसके पीछे दिवार बनी है जो गुलाबी रंग --

ब बड़ टोली चांदो ऊपर एक कोर्स का निशान है और सितारा बना हुआ। --

ये केबिन में केबिन पे शीशे लगे हुए --

बैगनी मेहरून और सीलेटी है।

और पीछे ओवरब्रिज बना हुआ है।

गाड़ी का रंग सुनैहरा है इसके पीछे के जो उह एक गाड़ी खड़ी है जो नारंगी रंग --

औरत के पास में एक तराजू रखा है जिसमें बाट भी है काले रगं का औरत के पीछे एक अ डव रखा है जो नीले रंग --

सामने एक आदमी का हाथ दिख रहा है जिसमे थर्माकोल का पत्ता है उसमे चाट मटर है।

नीचे लीज़ोल रखा हुआ है सेवलॉन रखा हुआ है यहाँ की फर्श सफ़ेद रंग की है।

कुछ बच्चे बैठे है जो क्राफ्टवर्क कर रहै है इनके सामने कैची और चूड़ी और कागज़ रखे हुए--

बिल्डिंग के ऊपर शेड पड़ा हुआ है और बिल्डिंग में हारकिन्स लिखा हुआ है नीचे शीशे लगा हुए है जो कि बंद है उसके बाद सीढ़ी लगी हुई है।

दुकन के बाहर एक बोर्ड है जिस पर ए वन एंड जेबी पार्लर लिखा हुआ है।